पेड़ बहोत बड़ा है। पुराना पेड़ है उसके पीछे साइड कुछ आदमी है। एक आदमी इधर है गले में --

बोहोत सारी कच्ची जमीन ही इधर दिख रही है जैसे मैदान में बना --

हरे रंग का बिल्डिंग कलर किया हुआ है। बड़ी-बड़ी खिड़किया लगी हुई हैं।

ये एक ज्वेलर की दुकान है जहां पर सोने-चांदी सामान बिकते --

मेज पे एक औरत एक बच्चा लिए एक आदमी अंदर साइड खड़ा है।